इस तस्वीर में केक का फैक्ट्री है इसमें दो केक बनाया हुआ है एक केक पीला कलर का है एक गुलाबी कलर का पीला कलर फु अ उसमें फूल लगा हुआ है दो एक नीले कलर का एक गुलाबी कलर का उसके बाद जो गुलाबी कलर का केक है।

इस तस्वीर में पेट्रोल पंप है जो दो पेट्रोल --